और बिल्डिंग के बाहर बॉउंड्री वॉल के बाहर यह एक --

कांच वगेरा यहाँ पे लगे हुये हैं। एक भैया अपनी बाइक लेके यहाँ पे खड़े हुए हैं।

जैसे कि अपन देख पा रहे हैं ये रोड साइड एक अ छोटी-सी शॉप है और जहाँ पे --

यहाँ पे ये हेयर कटिंग उम्म एक भैया की हेयर कटिंग बनाई जा रही है और काफी लोग यहाँ पे --

और मंदिर का एंट्री गेट नज़र आ रहा है और --

ग्रीन कलर की एक नेट बिछी हुई है।

जैसे कि अपन सामने एक देख पा रहे है यह एक उम्म जाली और नेट लगी हुई है और यहाँ पे एक --

क्रेन आई हुई है और यहाँ --

जैसे कि अपन देख पा रहे हैं यह एक जरनल स्टोर नज़र आ रहा है और यहाँ पे खूब सारे --

देखने को मिल रहा है कि अ अ अ बिल्डिंग पूरी सजी हुई है लाइटिंग से।

जैसे कि अपन देख पा रहे हैं यह एक अ मकान है और ब्लू कलर से पुता हुआ है और यहाँ की --